यहां ऊपर एक मशीन रखी हुई है।

सामने एक आदमी खड़ा हुआ है।

और पीछे पंखा लग रहा है।

सामने बहोत सारे फोटो पोस्टर है।

यहां पर बहोत सारी किताबें हैं।

बोर्ड के अंदर एक चार्जर है।

उसके हाथ में बैग है।

और एक नाव खड़ी है उसके ऊपर एक संतरी सा ट्यूब टंगी हुई है।

यहां पर बहुत सारे गिफ्ट रखे हुए हैं।

यहां एक लकड़ी की दुकान है।

एक सामने मेज है अंदर--

खिड़की के सामने एक मशीन रखी हुई हैं।

और वहां पर सामने दो बोर्ड हैं।

एक बस है बस के अंदर बहोत सारी सीटे हैं।

और मैट बिछ रहा है।

और एक पीले रंग का गेट है।

यहां पर एक मज्जिद है।

कुर्सियां और सोफे धरे हुए हैं।

उसने अपनी टांग उठा रखी है।

और सामने अलमारी है जंगला है।

साइकिल है उसपे कपड़े और एक आदमी बैठा हुआ है।

एक बाड़े गेट के छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है।

सामने एक मकान है साइड में और सामने एक आदमी खड़ा हुआ है।

और एक गत्ता है दो गत्ते हैं।

सामने पीछे बहोत सारे पेड़ हैं।

यहां पर बहोत सारे आदमी है और एक खड़ा हुआ है।

और एक कुर्सी है और कुर्सी के ऊपर आदमी बैठा हुआ है।

ऊपर बहुत सारे फूल है।

और अंदर भी दुकान के बहुत सारे फूल हैं।

तस्ले भी धरे हुए हैं और रोड़ी भी पड़ी हुई है।

यहाँ पर आदमी खड़े हुए हैं।

सामने कुर्सी और एक बच्चा है पेड़ पौधे हैं।

लाइट जल रही है और उसके पीछे लीड लगी हुई हैं और बोतल लटक रही हैं।

बहुत बहुत सारे घर हैं।

सामने काली टंकी रखी हुई है।